और यहां बहोत सारी घास लगी है बीच में थोड़ा सा पानी जमा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है यहां--

हाथ में लिया है एक इसमें चम्मच है और ऊपर से प्याज डला हुआ है।

दो पीले टी शर्ट पहन के और एक आगे काला टी शर्ट पहन के--

ये एक शादी वाला मंडप दिख रहा है जहां की बहोत सारे लोग डेकोरेशन कर के रखे हैं और यहां--

दुकान में बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई है ट्रे में।

ये एक बैंक के सामने की तस्वीर है जहां बहुत भीड़ है और दो आदमी खड़े हैं और बहोत सारी गाड़ियां--

सब रंग में खड़ी हुई है और कुछ --